जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है यंहा पे बहोत ही विशाल शंकर जी की बड़ी सी मूर्ति है और उनके सामने छोटा सा कछुआ और नंदी विराजमान --

होटेल माहि पैलेस इसमें आप छोटे -मोटे फंक्शन रिंग सेरेमनी किटी पार्टी --

ते हैं आज का टाइम फ़ास्ट फूड युग कहा जाता है यहाँ पर जनता पानी पूरी एंड पानी पूरी एंड चाउमीन सेंटर --

ये काफी विशाल और पुराने समय का मेहल इसमें आपको एक तरफ मंदिर ही आकृति में गुंबदाकार इमारत दिखाई दे रही है और उस --